बीच -बीच में पट्टी दी गई है क्रीमी रंग से और आसमान का रंग देखिए नीला है और अगल- बगल देखिए बोहोत सारे घने पेड़ है और नीचे देखिए डिवाइडर बना हुआ है जोकि --

देखिए बड़े-बड़े यहाँ पे लोहे लगे हुए है खम्बे के और यहाँ पर देखिए बीच-बीच में पटरे उसको ल टिकाने के लिए लगे हुए है और अगल-बगल देखिए--

के सामने बहोत बड़ा-सा मैदान है जो की बहोत हरा-भरा है और उधर देखिए मिट्टी जैसे भी मैदान दिख रहे है और यहाँ पर देखिए कुछ--

एक कूलर जैसा बनाया है जिसमे उ बीच में लोहा लगाया गया है।

ये देखिए नदी है और अगल - बगल बहुत सारे घने जंगल जैसे पेड़ दिख रहे है और यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल खड़ी है जो की इस --

के सामने एक हॉल है और यहाँ पे देखिए अगल बगल के जो दिवार का रंग है वो हरे रंग का किया गया है और ऊपर में जो दिवाल का रंग किया गया है वो सफ़ेद --

के सामने आसमान का रंग सफ़ेद है और बैगनी है और नीला है और यहाँ पे देखिए बहोत सारी बस खड़ी हुई है जो कि देखिए आस--

डिब्बे रखे गए है और यहाँ पर देखिए बगल में एक और गमछे लगे गए है और यहाँ पे एक आ--

एक बोहोत बड़ा -सा खम्बा है जोकि पीले रंग का है और अगल- बगल बोहोत सारे घने --

के सामने मिट्टी जैसा रास्ता गया है और यहाँ पे देखिए कुछ स्कूटी खड़ी हुई है अ कुछ मोटर साइकिल खड़े हुए है और अ सामने देखिए कार खड़ी है जो सफ़ेद रंग की है इधर से स्कूटी आसमानी रंग की है।

अउ खअ खंभे पे कुछ भी बनाया गया है और यहाँ पे देखिए छोटी-छोटी इधर दीवारे बनाई गई है उ--

और उधर देखिए नारंगी रंग से इधर पट्टी की गई है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे खाने पीने की सामान शैम्पू दिख रहे है।